आदमी बैठा है उसके पीछे आइडिया लिखा हुआ है।

यह एक पुल है उसके बगल में नदी है।

और बिल्डिंग के ऊपर हल्का रेड कलर से पट्टी बनी हुई है।

साइड में फायर वाला रेड कलर का रखा हुआ है।

ऊपर कांटेक्ट नंबर लिखा हुआ है।

और एक बोतल रखी हुई बिसलेरी की। इधर साइड में दो बोतलें रखी हुई है।

बंधन बैंक लिखा हुआ है ब्लू कलर से --

ड्रॉवर बोर्ड है सैंतालीस के बगल में वाइट कलर का।

जो की झरना है इसमें पानी बेहता है बहोत तेज और बहोत सारे पत्थर पड़े हुए हैं।

दू सागर है समझ लो ये झरना।

इनमें दो दिवाले खड़ी हुई हैं ऑरेंज कलर की।

और एक शिफे के बगल में बोर्ड लगा हुआ है।

आदमी हैं एक दो तीन चार दिख रहे हैं जो एक रेड कलर की शर्ट पहने है।

और इसके नीचे सब लोग खड़े हुए हैं चार आदमी।

यह एक बहोत बड़ा तालाब सा है।

बहुत सारा पानी भरा हुआ है।

बहोत सारी लड़कियां लड़के बैठे हुए हैं।

बहोत सारी लड़कियां हैं सिलाई कर रही हैं।

यह एक कॉपी किताबों की दुकान है इस पे कैंची टंगी हुई है।

ब्लू शर्ट वाला आदमी टोपी लगाए हुए हैं।

यहां पे दो बच्चे झूला लगा है इससे स्लिप कर रहे हैं।

नीचे एक कच्ची जमीन है जहां से बच्चे फिसल रहें--

ये एक फ्रीजर इसमें रखा हुआ है और एक क्वालिटी वॉल्स का आईसक्रीम का फ्रीजर है।

और ये मैगी वगैरा येलो कलर की शायद रखी हुई है।

यहां पे तीन आदमी जा रहे हैं।

और बहुत सारे पेड़ हैं झूमर लगे हुए हैं बड़े बड़े से।

वे एक दो तीन झूमर है इसमे।

यह एक आदमी खड़ा हुआ है जो हाथ में एक किताब पकड़े हुए हैं।

ब्लू कलर का लोहे का पाइप लगा हुआ है।

यह रोड ऐसी बनी हुई है जाकर के आगे बोर्ड लिखा है लगा है।

और गमले रखे हुए हैं तीन जो एक ब्लू कलर एक येलो कलर का है।

एक्स_आई_आई कॉमर्स लिखा हुआ है बोर्ड पे।

एक औरत पहने ब्लैक कलर का नकाब पहने हुए खड़ी है।

और साइड में एक दो तीन चार मंजिल का घर बने हुए बहुत बड़े बड़े से --

पीछे हरे भरे पेड़ हैं खंभा है लाइट का--

और ब्लैक कलर के काले कलर के सोफे हैं।

व्हाइट कलर की छत है मस्जिद की।

और इसमें लिखा हुआ है आठ सात छे पाँच चार जो दिख रहा है।

दो पाइप और जिसपे कपड़ा टंगे हुए हैं ऑरेंज कलर का ब्लैक कलर के।

सिल्वर कलर के बहुत सारे रखे हुए हैं कुकर ।